जैसा कि आप देख सकते हैं। यह तस्वीर में हमें एक बैंक दिखाई दे रही है और यह एक भारतीय स्टेट बैंक है और स्पेशल इंग्लिश में भी लिखा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ।

मैं बहुत अच्छा लगता है स्लाईड करने में।

जैसा कि आप देख सकते हैं यह दृश्य में एक में बहोत ही बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है और देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि यह एक अ बहोत ही बड़ी एक कपड़े की माल है और यह माल देखने में बहोत ही सुंदर और अट्रैक्टिव भी लग रहा है।

इमारत नजर आ रही है और यह पुरानी और ऐतहासिक इमारत जैसी लग रही है जिसमें से कई इमारत से ये घास फूस नजर आ रहे हैं और बगल में --

थोड़ी ही दूर में हमें ये पहाड़ी इलाके नजर आ रहे हैं। जहाँ पे बीच एक झरना भी बहता हुआ हमें नजर आ रहा है।

जैसा कि आप देख सकते हैं यह तस्वीर में हमें एक बड़ी सी मॉल नजर आ रही है और यहाँ पे --

और कई लोग यहाँ पे नाइन्टी मिनट जिम के अनुसार जिम करने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पे एक जिम का हेड भी घूमता हुआ हमें यहाँ पे नजर आ रहा है।

और ऊपर में कई तरह के बल्ब भी नजर आ रहे हैं और यह सारे के सारे एल. ई. डी. बल्ब्स हैं।